पकड़ कर खम्बे को और वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पेहना है।

और कार्यालय का कक्ष को दिखाया जा रहा हैं ।

टीन लगे हुए है उसके ऊपर भी घास जम गए हैं ।

केरला होटल वेज एंड नॉनवेज रेस्टोरेंट --

स्थान है जहाँ पर जिम किया जाता है कसरत किया जाता हैं ।

यह एक बड़े से नदी का तस्वीर हैं ।

जो की वा-उजले पोषाक में है कुर्ता पैजामा और व-वाइट उजली टोपी पे है।

सेल्फी ले रहा है मिरर में सामने मिरर लगा हुआ है।

और इसे घेरा-घेरा हुआ है और पीछे में बड़े-बड़े पेड़ हैं ।

और ए एक पोस्टर भी लगा हुआ हैं ।